इस पिक्चर में सफेद रंग का दीवार है दो खिड़कियां नजर आ रहा है।

ये एक शादी का स्टेज है जहां बहोत सुंदर सा डेकोरेशन है।

उसके बगल में एक बाइक है। एक सब्जी का भी दुकान है।

ये एक कपड़ों का दुकान है।

इस छवि में दो लड़के बैठे हुए हैं।

छवि में मैं एक बिल्डिंग देख रही हु।

उसके बगल में भी बहोत सारे घर है।

इसी प्रकार की दवाई भी है।

आसमान सफेद रंग का नजर आ रहा है।

पीछे कुछ लिखा हुआ है वो आइडिया लिखा हुआ है।

दुकान के अंदर लाइट्स भी ऑन है।

दुकान का नाम रेस्टोरेंट लिखा हुआ है मिलन रेस्टोरेंट ।

बहोत सारे सोफा भी नजर आ रहा है।

इसके पीछे एक ग्रीन कलर का टॉयलेट भी मैं देख पा रही हूं।

चेयर में बैठे खाना खा रहे हैं।

एक लड़का एक छोटा लड़का खड़ा है कुछ पकड़े।

कुछ फूल के पॉट भी रखे हुए हैं।

बहोत सारे पौधे एक साथ लगे हुए हैं।

इस छवि में मैं एक गोल्डन टेंपल देख पा रही हूँ जो बहुत सुंदर से रखा हुआ है।

एक इंसान काला रंग का कपड़ा पहन कर खड़ा है।

आसपास पूरा पेड़ लगा हुआ है।

आगे एक फूल भी नजर आ रहा है।

इस छवि मे मै एक ग्रे कलर का बहोत लंबा और ऊंचा घर देख पा रही हूं।

इसके पीछे बहोत सारे पेड़ भी है।

दो दरवाजे खुले भी हैं।